मेडिकल स्टोर के में बहुत सारी दवाइयां रखी हुई है मेडिकल स्टोर का पोस्टर के ऊपर वायर --

और साइड में एक पिचकारी हैजिससे होली खेला--

इनके पीछे जो पिलर है वो पीले के हैं।

साइड में एक घंटी है जो और उसके नीचे एक इंसान खड़ा है जो फोन में बात कर रहा है।

खाना खा रहे लोगों में कुछ लोग अब आपस में बातें कर रहे हैं।

यहां कुछ फूल रखे हुए हैं जो कि सफेद कलर का है वो एक बोरे के ऊपर रखा हुआ है।

किसी इलेक्ट्रिशियन का दुकान है जहां पे कुछ स्पीकर रखे हुवे हैं।

छोटे छोटे बॉक्स है जो कि कलरफूल दिख रहे हैं सारे काले रंग के हैं।

और उसी के सामने कुछ पोल लगाए गए है।

एक काले रंग का पर्दा हैऔर साम बगल मे एक शीशा हैजिसमें कुछ पर्दे का रिफ्लेक्शन दिख रहा हुआ है।

पे बहुत तरह तरह की कवर रखे हुए हैं बहुत तरह तरह के चार्जर है।

इसमें में कुछ टी_शर्ट के हैं जो कि एक पोस्टर दिखाई जा रहे हैं ब्लैक और वाइट कलर के।

और साइड में एक और ब्लू कलर का टीशर्ट है जो कि पुरा--

यहा पे पेड़ लगाया गया उसे चारो तरफ से घेर दिया गया है सारे सिकड़ से घेरा गया है और--

और साइड में एक और बिल्डिंग है जो कि पलस्तर भी तो नहीं हुआ है।

साइड मे बहुत तरह के कुरकुरे है जोकि लेज है टेडे मेडे है और बहुत तरह के है। दुकान के सामने एक ट्रॉली है।

किसी बिल्डिंग का दृश्य है जिसके सामने कुछ गाड़ियां रखी हुई है कुछ उसमें से कुछ फोर व्हीलर है कुछ टू व्हीलर है।

टेढ़े मेढे भी है कुछ चॉकलेट भी रखे हुए है जो कि पल्स है और बाहोत तरह के है।

और एक इंसान बैठा हुआ है एक इंसान जो सफेद कलर का टीशर्ट पहना हुआ है वो केला पर पत्ता सेट कर रहा है।

जो इंसान दुकान में बैठा हैउसके बगल में एक डिब्बा हैजो की चॉकलेटी कलर का हैउसके बगल में एक और बर्तन है जो कि जिससे भांप निकल रहा है।

ये किसी पार्टी का दृश्य है यहां पे एक टूल रखा हुआ है टूल के आगे एक कुर्सी पर एक इंसान बैठा है।

और बहोत तरह की परफ्यूम है ऊपर में बहोत --

बाहर एक कुर्सी रखी हुई है दुकान के आगे एक बोर्ड लगा --

बिल्डिंग मे एक इंसान खड़ा है जोकि सीढ़ी के पास खड़ा है। उस बिल्डिंग के पीछे एक बड़ा सा मकान है।

यह किसी पहाड़ी एरिया का क्षेत्र है यहां पे एक बड़ा सा चट्टान है जिसके ऊपर एक इंसान बैठा है।

एक इंसान जो कि पिलर लगा रहा है उसका हाथ टूट गया है। उसका हाथ पलस्तर किया गया है।

में वही जिसका हाथ टूटा है वो पिलर अच्छी तरह सेट कर रहा है एक गड्ढे में।

जैसे स्टूडियो है जहां पे साइड में ति दो तिरंगा लगाया गया है।

किसी कंप्यूटर स्टोर का दुकान है जहां पे बहुत तरह के कीबोर्ड रखे हुए हैं।

यहां पे जिओ फोन का चार्जर भी मिल रहा है और केबल भी रखे हुए हैं।

बहुत सारे पिलर लगाए गए है कुछ मजदूर इसमें काम कर रहे हैं।

घर का छज्जा लाल रंग से रंगा गया है।